कुछ मेजे पड़ी हुई है कुछ जारनेटर रखे हुए हैं।

यह एक पेट्रोल पंप है। कुछ आदमी पेट्रोल का काम कर रहे हैं कुछ डलवा रहे हैं।

यहां पर ट्रक भी खड़ा हुआ है पीछे बोर्ड लगा हुआ है।

इमारते गिरी हुई दिखाई दे रही है।

पानी का रंग हरा दिखाई पड़ रहा है।

बहुत सारे हरे घासें दिखायी पड़ रही हैं।

कुछ बाइक खड़ी हुई है हरे रंग की ब्राउन कलर का पेड़ पड़ा खड़ा हुआ है।

यह एक बाजार है जहां से लोग सामान खरीद रहे हैं यहां बहोत सब्जियों की दुकाने है बहुत फलों की दुकाने है।

और मेज रखी हुई है मेज पर बुके भी रखी हुई है।

यह फ्रूट की दुकान है यहां बहुत सारे फ्रूट रखे हुए हैं।

कुछ आदमी चल रहे हैं कुछ आदमी बातें कर रहे हैं।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ बिल्डिंगे लग रही हैं एक बट्टा रखा हुआ है।

यह एक जगह है जहां व्हाइट कलर के टाइले लगी हुई है।

कुछ बंडल रखे हुए हैं। एक आधार कार्ड का बंडल है और एक पैन कार्ड का बंडल है।

एक पहचान पत्र का बंडल है और एक बंडल वाइट कलर का है।

बराबर में दुकाने भी है एक कार पार्किंग है जिसमें कुछ गाड़ियां खड़ी है एक आदमी है।

यह एक कैंटीन है जहां पर कुछ खाने की चीजें रखी हुई है।

कुछ तारे हैं बराबर में दुकान है जो चिकन मटन की है एक झंडा लगा हुआ है।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। बोहोत सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं। गोभी है लहसुन है पालक है।

एक औरत जा रही है जिसने लाल थैला लिया हुआ है।

यहां दुकान में पत्थर पड़ा हुआ हैं।

यहां पर सफेद कलर का पर्दा लगा हुआ है।